और इस साइड में एक कैंटीन दिखाई दे रही है जिसमें से खाने पीने का सामान मिलता है पीछे की तरफ तीन--

ग्रीन कलर का धरती पे कारपेट बिछा हुवा हैं।

और लैपटॉप का रंग ब्लैक है एक चेयर रखी हुई है।

और उसके साइड में एक नई बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक टावर दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

और बड़े बड़े लोहे के ग्रिल्स दिखाई दे रही है।

और साइड में से एक सड़क दिखाई दे रही है।

एक ग्रीन कलर का कैफे दिखाई दे रहा है।

और लेडीज का रंग साफ नहीं है समड़ा है और पीछे की तरफ पत्थर लगे हुए हैं।

एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें राजस्थानी शो--

जिसमें दुकानदार और कुछ फूलों को भी बेचता हुआ दिखाई दे रहा है हार में येलो व्हाइट पिक --